बिच में एक बड़ी सी घडैल दिखाई दे रही है एक आदमी रास्ते से जाते दिखाई दे रहा है।

और वह उनको साफ करते हुए नजर आ रहे है। ईमेज में पाँच छे आदमी उनकी सफाई करते दिख रहे हैं।

इमेज में एक गुफा दिखाई गयी है जो कि काफी साल पुरानी गुफा है।

टी.टी वहाँ पे खड़ा लोगों को बता रहा है।

इस में दो रिक्सा दिखाई गई है जो कि बेचने के लिए रखी गई हैं। इमेज में एक --

इमेज एक बैंक की दिखाई दे रही है जो की काफी पुराना बैंक है जिसका नाम युनियन बैंक है यूनियन बैंक के बाहर काफी --